सिर पर कुछ पॉलिथीन के पैकेट्स लगाए गए हैं।

व्हाइट कपड़े में पंडित दिख रहा है।

सामने ही हमें कांच दिखाई दे रहे हैं लगे हुए--

यहां हमें दिखाई दे रहे हैं बहोत सारे बैलून --

एक पेड़ दिख रहा है जिसमें ग्रीन कलर की पत्तियां लगी हुई है।

ऑटो सर्विस लिखा हुआ है बोर्ड में।

कुछ पत्ते दिखाई दे रहे हैं ग्रीन कलर के।

एक व्हाइट कलर की कार दिख रही है।

छत बनी हुई हैं जो रेड कलर से बनी हुई हैं।

सामने कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे है।

कुछ लोग भी दिख रहे हैं काम करते हुए--

नीले और सफेद कलर के हैं।

बड़े बड़े ढोलक दिखाई दे रहे--

यहां पर हमें दिखाई दे रही है रेलिंग लगी हुई।

साथ मे ही कुछ वाइट कलर की चादरें दिख रही हैं।

सामने ही हमें रुस रास्ता दिख रहा--

येलो कलर के बहुत सारे आम दिखाई दे रहे हैं।

ब्राउन कलर की हमें एक चेयर भी दिखाई दे रही है।

यहां दिखाई दे रहा है हमें--

कुछ ऑरेंज कलर की चीजे हैं।

जिसमें कि व्हाइट कलर की लाइटें है।

यहां पर कार पार्किंग दिखाई दे रही है।